जावा में फोर लूप के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि जावा में फोर लूप का प्रयोग कैसे करें160
इस ट्यूटोरियल के लिए हम प्रयोग करेंगे उबुंटू 1110 जेडीके 16 और इक्लिप्स 370 इस ट्यूटोरियल के लिए आपको जावा में रिलेशनल ऑपरेटर्स और इफ स्टेटमेंट का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो उचित ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी निम्नलिखित वेबसाईट पर जाएँ
httpspoken tuitorialorg यहाँ फोर लूप के लिए सिंटैक्स दिया गया है
इसमें प्रारम्भन लूप कंडीशन और वृद्धि शामिल है
इसके बाद इसमें फोर ब्लॉक है जो तब तक निष्पादित होता है जब तक लूप कंडीशन ट्रू होती है
अब इक्लिप्स में एक उदाहरण लेते हैं
अतः इक्लिप्स पर जाएँ
हमारे पास पहले से ही फॉरलूपडेमो नामक एक क्लास मौजूद है
मेन मेथड के अन्दर फोर लूप जोड़ते हैं
अतः मेन फंक्शन के अन्दर टाइप करें इंट आई सेमीकोलन
फिर फोर परेन्थिसिस में आई इक्वल टो 0 सेमीकोलन आई लेस थान 10 सेमीकोलन आई इक्वल टो आई प्लस 1
यह कथन निर्णय करता है कि लूप कैसे आगे बढ़ता है
आई 0 लूप के लिए आरंभिक कंडीशन है
यह कंडीशन वैरिएबल को शुरू होने की अनुमति देती है
आई10 लूप की संचालन कंडीशन है
यदि कंडीशन ट्रू है तो फोर ब्लॉक निष्पादित होगा
अन्यथा इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा
इसका अर्थ है जब आई 10 के बराबर या उससे अधिक है तो ब्लॉक निष्पादित नहीं होता है
फिर i i1 बताता है कि लूप वैरिएबल को किस प्रकार बदला जाना है
यहाँ आई का मान 0 से शुरू होता है
यह लूप के प्रत्येक चक्र के लिए 1 बढ़ाता है जब तक यह 10 नहीं हो जाता
अब आई में कुछ परिवर्तन करते हैं
अतः कर्ली ब्रैकेट खोलें और बंद करें
कर्ली ब्रैकेट्स के अन्दर टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और प्रिंट करें आई इंटो आई
यह 0 से 9 तक प्रत्येक संख्या के वर्ग को प्रिंट करेगा
अब आउटपुट को देखते हैं
अतः प्रोग्राम को सेव और रन करें जैसा कि हम देख सकते हैं लूप 0 से 9 तक की संख्याओं में संचालित होता है
प्रत्येक चक्र के लिए संख्या का वर्ग प्रिंट हो जाता है
अब सभी 2 अंकों वाली संख्याओं को प्रिंट करते हैं जो 3 या 5 के गुणज हैं
अतः आई का मान 10 से 99 के बीच होना चाहिए
अतः आई इक्वल टो 0 को आई इक्वल टो 10 से बदलें
और आई लेस थान 10 को आई लेस थान 100 से बदलें
फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अन्दर हम केवल तभी संख्या प्रिंट करते हैं यदि यह 3 या 5 की गुणज है
अतः टाइप करें इफ ब्रैकेट्स के अन्दर आई मोद 3 डबल इक्वल टो 0 या ब्रैकेट के अन्दर आई मोद 5 डबल इक्वल टो 0
यह कथन जांच करता है कि आई 3 या 5 से विभाज्य है या नहीं
फिर कर्ली ब्रैकेट्स में हम आई का मान प्रिंट करते हैं
अतः आउटपुट को देखते हैं
अतः प्रोग्राम को सेव और रन करें
हम देख सकते हैं कि संख्याएं 3 या 5 की गुणज हैं
इस प्रकार हम जावा में फोर लूप का प्रयोग करते हैं
हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर पहुँच गए हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि जावा में फोर लूप का प्रयोग कैसे करते हैं
एक नियत कार्य के लिए एक तीन अंकों की संख्या को आर्मस्ट्रांग संख्या कहा जाता है यदि यह इसके अंकों के घनों के योग के बराबर है
उदाहरण के लिए 153 बराबर है 1 का घन 5 का घन 3 का घन
ऐसी सभी तीन अंकों वाली संख्याएं ज्ञात करें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए spoken tutorialorgव्हाट इस आ spoken tutorial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
यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएँ चलती है
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो पर उपलब्ध है यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है
मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद